एक आदमी जा रहा है येलो कलर का एक बड़ा बिल्डिंग है।

सामने घर दिखाई दे रहा है जिसके दीवाल का कलर व्हाइट है। पलंग दिखाई दे रहा है। लोहे के ब्लैक कलर के --

कुछ स्टील के बरतन रखे हुए दिखाई रहे हैं। व्हाइट कलर का कूलर नजर आ रहा है। पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉक्स लगा हुआ है।

एक आदमी बैठा हुवा नजर आ रहा है काउंटर में।

व्हाइट कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है।

कुछ येलो कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है।

ग्रिल बनी हुई हैं सीढ़ी बनी हुई नजर आ रही है ट्यूब लाइट जल रही है।

पैर दिखा रहा है ब्लैक कलर का बैग नजर आ रहा है।

सामने एक बिल्डिंग नजर आ रहा है जीसका कलर पर्पल और व्हाइट है।

सामने एक हाथी दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लड़का डंडा ले के खड़ा हुआ नजर आ रहा है पानी भरी हुई दिखाई दे रही है।

दीवाल नजर आ रहा है लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है वाइट के टेबल नजर आ रहे हैं जिसमें प्लेट दिखाई दे रहा है छोटा सा गुलदस्ता नजर आ रहा है।

गमले लगे हुए दिखाई दे रहे हैं दो ऐ_सी लगी हुई नजर आ रही है कुछ लोग अंदर--

सामने व्हाइट कलर का दीवाल नजर आ रहा है जिसमें स्टार कलरफुल दिखाई दे रहा है घड़ी नजर आ रही है खिड़की में।